पंखा भी है चार दस गो शायद।

आरबी खड़ा एक बढ़िया गाड़ी महंगा और आदमी अंदर खाना भी खा रहे हैं शायद कुछ--

या फिर जेंट्स के लिए भी हो सकता है।

और यहां पर एक स्टैंड भी है जो कि जिसमें फोन रख ने आप वीडियो बना सक--

न्यू स्टाइल टोटो।

मिनरल वाटर का डब्बा भी है।

मेरे को देखने में नहीं बन रहा है।

बोतल है एक आदमी--

बोर्ड में कुछ कुछ लिखा नहीं पढ़ाई जा रहा है।

तीन चार आदमी का मुंह नहीं दिख रहा है।

ये शायद कॉलेज है।

ए शायद पोलटी फॉर्म लगता है।

और एक अंकल भी लग रहे हैं जिसका मुंह नहीं दिख रहा है बट यहां तीन चार आदमी भी है।

दो भी नाव में है।

चेयर है ।